यह एक बहुत ही बड़ा होटल है इस होटल में बहुत सारे चीज मिलते हैं और इस होटल के बाहर बाइकें खड़ी है और बहुत सारे लोग इसमें आते-जाते रहते है ।

यह एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है इस हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे गाड़ियाँ --

और यह हॉस्पिटल एकदम चारों तरफ से बंद है यह हॉस्पिटल देखने में काफी बड़ा है।

यह एक सरकारी स्कूल है इस स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और यह इस स्कूल में बहुत सारे पेड़ भी लगी हुई हैं यह स्कूल चारों तरफ से घीरा हुआ है।

इस घर के अंदर कुर्सी पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं । कुछ लोग बहार में भी खड़े हैं । इस घर के बगल में बोहोत सारे पेड़-पौधे भी --